एक फ्रिज पड़ा है। फ्रिज के ऊपर एक लाइट वाला बोर्ड लगा हुआ है। एक पंखा है दो गोल साइज का है और रेड कलर --